एक इमेज को देखकर मुझे इसमें पत्थर में पत्थर के माउंटन --

क्रीम क्रीम कलर का यहां पे डोर है।

जमीन और इधर राइट साइड में कंकड़ पत्थर जैसे जमीन--

का इंटीरियर ओबे व्हाइट कलर से है वायर ब्लॅक कत्था कलर में --

में एक इमेज को देख रही हूं जिसमें ब्लू व्हाइट कलर का--

एक इमेज को देख रही हूं मैं जिसमें--

और लेफ्ट में येलो और क्रीम कलर का टॉप जैसा पेहना हुआ हैं।

और दो लोग और औरत लोग हैं और घांस है बहुत सारा।

इमेज को देख रही हूं जिसमें बहोत सारे लोग हैं और वो लोग--

ये लोग औरत लोग रेड कलर का साड़ी और ब्लाउज पेहने है और आदमी लोग व्हाइट कलर का धोती और कुर्ता और ब्लैक कलर का --

यहां पे सफेद सफेद मुर्गियां देख रही दिख रही--

और उनका रिफ्लेक्शन बन रहा है इमेज में और इसमें अनगिनत मुर्गियां रखी--

कुछ हुआ यू आर के यू ओ आई --